और एक आदमी भी पास में खड़ा हुआ है।

सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं।

और चारों तरफ रोशनी है।

यह बैंक ऑफ़ बड़ौदा का नजारा है।

तिरंगा फ्लैग नजर आ रहे हैं नीचे बैंक ऑफ़ बड़ोदा बैंक है।

यहां पर मैन के कपड़े मिल रहे हैं।

कूलर भी नजर आ रहे है।

मैजिक आपस में मेल खा रही हैं।

और वाटर पार्क में लोग मस्ती कर रही है।

क्रेन का कलर ऑरेंज है।

ट्रेनिंग दी जाती है यहां पर फौजी ट्रेनिंग करने आए हुए हैं।

जहां पर अपोलो भी अवेलेबल है।

उसके पास टायर भी गिरे हुए हैं।

जिम हैं यहां पर लोग--

कराटे सीख रही है।

यह एक ऑफिस का दृश्य दिख रहा है।

यहां पर दो अंकल आंटिया --